इलेक्ट्रॉनिक सामान बेची जाती है और यहां बहुत सारे बिल्डिंग है दो तल्ला तीन तल्ला।

नदी के किनारे बहुत गंदा कचरा टाइप का दिख रहा है नदी किनारे का फोटो है जो कि नदी काफी बडा है।

पानी भर रहे हैं और पानी में तैर रहे हैं |